ये एक ऑटो है वो दिखारे--

जोकि एक खाने की प्लेट की फोटो है।

और ये एक कोई जगह है।

और इसके साइड में एक ऊंची चोटी भी दिखा रखी है।

ये किसी जगह की फोटो है वो दिखा--

रूम है और इसके सामने ये बहोत ही बड़ा--

और यहां अच्छे से डेकोरेशन भी कर रखा है।

और इसके ऊपर एक टेंडर लगा रखा है।

और नीचे एक फ्लोर भी बना रखा है जिसके ऊपर एक चेयर है वो रखी हुई है रेड कलर की चेयर है और इसमें लाइट्स भी हैं बहुत।

और यहां पे बहुत सारे घर है वो दिखाई दे रहे--

बहोत सारे टेबल और सोफे वगैरा रखे हैं।

जिसकी रेलिंग के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं।

और पीछे ये एक लड़का दिखा रखा है।

और ये बहुत अच्छे से अह दिख डेकोरेट कर र--

ये एक रूम की फोटो है वो दिखा रही।

और ब्लैक कलर की ये खिड़कियां भी दिखा रखी हैं।

और इसके ऊपर एक प्लग प्वाइंट भी दिखा रखा है और नीचे एक स्टूल है।